चारों तरफ हरियाली है और मौसम भी बहोत अच्छा--

है आपको देख सकते हैं आप सब लोग--

इस तस्वीर में चारों तरफ हरियाली है।

जो पीछे से पीले रंग का है इसमें पीछे खंबे भी है ट्रांसफॉर्मर भी हैं।

शीशे का गेट है खिड़कियां भी शीशे की है।

बच्चे दिख रही हैं बाइक है एक्टिवा है।

ए_सी भी लगा हुआ है पंखे भी दिख रहे हैं खिड़कियां भी बनी हुई हैं।

जहां पर काफी सारे डब्बे पैकेट रखे हुए हैं।

और बिल्डिंग भी बनी हुई है।

कुर्सियां और टेबल भी है ऊपर लाइट भी लगी हुई हैं।

जो कि हरे रंग की है।

नीचे एक्टिवा खड़ी हुई है।